कैमरा में पूरे घर दिखता है और यहाँ पर नीचे फर्श भी है फर्श में काला कलर का --

तीनों रेत में पड़े हैं। यहां पे तीनो के हाफ टी शर्ट और हाफ लोवर पहन रखा है।

एक बिल्डिंग है ये दो मंजिल की बिल्डिंग है और उसके ऊपर चद्दर लगा रखी है इसके इसमें चार पाँच कमरे हैं यहाँ पर पीला कलर भी है यहां बहुत सारे पेड़ भी हैं उन पेड़ में पीले पीले फल उग रखे हैं।